एवं पास में हरे घास का एक बहुत बड़ा मैदान हैं।

यहाँ पर एक ठेला लगा हुआ --

जिसमें कुछ लोग --

यहाँ पर बहुत सारे लोग --

एकदम उसके बाहर कुछ लोग--

यहाँ पर एक मारुती बैन खड़ी हुई है।